यह एक कमरा है कमरे में बहुत सारी टेबल है कुर्सी रखी हुई है कुछ तस्वीरें बनी हुई हैं और कैमल का कलर ब्लू है।

यह एक मस्जिद का कमरा है यहाँ पर चटाई बिछी हुई हैं जय हनुमान जय सिया और पंखा लगा हुआ हैं।

यहाँं पर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं पौधे लगे हुए हैं दरख्त लगे हुए हैं आस पास बहुत सारे घर हैं।

घास लगी हुई है आसमान पूरा खुला हुआ है।

और आस पास सामान रखा हुआ है और घर बहुत बड़ा है दो कुर्सियाँ भी रखी है उस पर पर्दा डाला हुआ है।

ये एक रास्ता है और रास्ते में कोई नजर नहीं आ रहा हैं एक दरख्त है जो बहुत बड़ा हैं और बहुत हरा हैं।

और सारी दुकाने बंद है एक दुकान खुली हुई है।

यहाँ पर बहुत सारा हौंडा खड़ा हुआ हैं दूकान में बहुत लाइट लगा हुआ हैं।

यहाँ पर कार खड़ी हुई है दो आदमी खड़े हुए हैं और--

निस कर के एक दुकान है और दुकान पूरी काँच की बनी हुई है एक बड़ा सा गेट बना हुआ है।

यह एक डैम हैं डैम के अंदर बहुत सारा पानी हैं और दो लोग खड़े हुए हैं एक बच्चा हैं और एक आदमी खड़ा हुआ है।

घर बन रहा है हर तरफ छड़ बिछा हुआ है एक आदमी चल रहा है एक आदमी मिट्टी उठा रहा है।

चार पांच लोग खड़े हुए हैं एक पोस्टर लगा हुआ हैं मॉल में बहुत सारा लाइट हैं बहुत सारे कपड़े हैं अलग अलग कलर के--

यह एक होटल वोटल के अंदर अ म बहुत सारी चीज़ रखी हुई है टाइल दिख रहा है अलग अलग--

यहाँ पर एक बस खड़ी हुई है बड़ी सी और आस पास बहुत बड़ा बंगला है।

यहाँ पर एक रिक्शा दिखाई दे रहा है और आस पास बहुत सारे दरख्त हैं।

यह एक कैफे है कैफे के बाहर एक--

गेट बना हुआ है दरवाजा पूरा जाली से बना हुआ है जाली का कलर वाइट हैं और उस कैफ़े के बाहर एक हरा भरा दरख्त है।

यह एक सोने की दुकान है यहां पर बहुत सारा सोना रखा हुआ है और बहुत सारी चेयर लगी हुई है और--

यह पूरा जंगल जैसे दरख्त हैं बिल्कुल बड़े बड़े और बिल्कुल हरे भरे हैं।

और यह रात का वक्त है और पेट्रोल पंप के ऊपर बहुत सारे लाइट लगे हुए--

यहाँं पर बहुत सारे दरख़्त हैं और बहुत सारे लाइटें दिख रहे हैं रास्ता दिख रहा है और अँधेरा बहुत है।

यह एक डेम है डेम में दूर दूर तक पूरा पानी भरा हुआ है।

आसमान पर पूरे बादल छाए हुए हैं इसलिए आसमान दिखाई नहीं दे रहा।

यह एक लकड़ी से बनी हुई कुर्सी रखी हुई है जिसमें--

यह एक स्टेट बैंक ए_टी_एम है और उसके बाहर एक आदमी खड़ा हुआ है।